नीचे सड़क दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में बहुत सारे लड़के लड़कियां दिखाई दे रहे हैं जो--

पीछे दीवाल सफेद रंग का दिखाई दे रहा है।

नीले रंग की कुर्सियां है जिस पर लड़के बैठे हुए हैं।

बैठने के लिए कुर्सी लगी है जो कि भूरे रंग की है।

उसके बाहर बड़ा सा पोस्टर लगा है जिसपे द हाउस इक्कीस लिखा हुआ है।

किनारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

यह एक सैलून की दुकान है जहां पे बड़ा सा सलून का पोस्टर लगा हुआ है।

लोगों के पीछे नीले और सफेद रंग की गुब्बारे लगे हुए हैं।

सारे बहोत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

कुर्सियां सफेद और भूरे रंग की कपड़े से ढके हुए हैं।

नीचे घास हैं कंकड़ भी दिखाई दे रहे --

इस तस्वीर बहुत सारे फल दिखाई दे रहा है जो की अलग अलग प्रकार के हैं।

बहोत सारे अलग अलग प्रकार की मशीने रखी हुई है जोकि काले और संतरे रंग की है।

ऊपर की दीवार हरके संतरे रंग की है।

एक के हाथ में झोला और दूसरा हाथ मे काला बैग लिया हुआ खड़ा है।

सीढ़ी दिखाई दे रही है।

मेज पे छोटा सा गमला रखा हुआ है।

यहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठा है।

इस तस्वीर में एक औरत दिखाई दे रही है जोकि लाल और पीले रंग के कपड़े पहने है।

छत पे घासें दिखायी दे रही हैं।

पत्थर के ऊंट बने है हरे पेड़ पौधे है ऊपर खुला आसमान है।

ऊपर का छत सफेद रंग का है।

यहां पे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो अपने एक पैर पे खड़े हैं।

ऊपर के खंभे सब हरे रंग के हैं।

सामने हरा कलर का दरवाजा है।

सफेद रंग की लाइट लगी हुई है।

इनमें बहोत सारे ईट रखी है।

नीले रंग का पर्दा लगा हुआ है।

पीछे बड़ी सी पानी की टंकी है।

पीछे का दीवार संतरे रंग का दिखाई दे रहा है।

ऊपर का छत सफेद रंग का है।

दीवाल पीले रंग का दिखाई दे रहा है।

सफेद और पीले रंग की लाइट दिखाई दे रही है।

मेट्रो का रंग लाल और सफेद रंग का है जिसपे बत्ती भी जल रहे हैं।